बिल्डिंग्स बड़े हैं शायद इन्हें बाद में खिलौने --

यह बहुत ही अच्छा जगह --

बहुत ही सुनहरे बनाये गए हैं।

यहाँ पर एक महिला और एक बच्चे दिख रहें हैं।

अच्छे काम किये जाते हैं बाहर में --